मार्किट जैसा कुछ लग रहा है और मार्किट में भी बहुत बड़ा-बड़ा दुकान है जो बहुत ही सुंदर है बड़ा-बड़ा यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक बड़ा-सा किताबो का दुकान है यहाँ पे बहुत सारी किताबे रखी गई हैं बहुत सी प्रकार कि किताबे यहाँ पे रखी गई है एक आदमी यहाँ पे कुर्सी म बै कुर्सी पे बैठा है जो इस दुकान का ओनर है।

और इस दुकान को बहोत अच्छे से सजाया गया है यहाँ पे बैलून लगाये गए है बहोत अच्छे-अच्छे कलम यहाँ पे दिखाई दे रहे है सब किताब बहोत अच्छे से रखे गए है जो देखने में बहोत ही ज्यादा सुंदर लग रहे है।

बर्तन साफ करने का समान और भी यहाँ पे बहोत से समान है जोकि रखे गए है यह दुकान बहोत ही ज्यादा बड़ा है बहुत ही बढ़िया है।

एक कुर्सी में सामने यहाँ एक लगाया गया है इस को बहुत अच्छे से सजाया गया है और अच्छी अच्छी लाइटे लगाई गई है यहाँ पे बहुत से लोग है जोकि आए हुए हैं।

साइड में यहाँ पे छोटे से रास्ते है जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे है इस रास्ते पर एक और पेड़ है और आसपास यहाँ पे घर दिखाई दे रहे है जो बहोत सुंदर-सुंदर से बनाए गए है और बहुत दूर में देखने में पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है जो एक पहाड़ है।

यहाँ पर कई गाड़ियाँ है जोकि खड़ी कि गई है देखने में बहोत ही सुंदर लग रहा है बड़े-बड़े यहाँ पे पिलर है जो खड़े किये गए है बहोत ही अच्छा लग रहा है देखने में बड़े-बड़े यहाँ पे बोर्ड लगाये गए--